सवार हुए है तलाब के किनारों पर हरी-भरी सी घास लगी हुई है।

एक व्यक्ति जमीन पर लाल कलर की पल्ली के ऊपर बहुत सारी मरी मछलियों के बच्चे बेंच रहा है।